और इसके आस-पास छोटे-छोटे पेड़-पौधे हमे दिखाई दे रही है और खिड़कियाँ बहुत अच्छी लग रही है।

यह एक न्यू ड्राई क्लीनर्स ऑफिस है इसमें बहुत सारे लाइट --